यहाँ पर छात्र आई.टी.आई --

बोट भी चलाते हैं और बोट चलाने का आनंद --

बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर टहलते हैं सुबह और शाम को।

बजट होती है। जो कम पैसे वाले लोग होतें हैं --

यह समुद्र के किनारे हैं।

नदी में इसके बीच में जाने के बाद बहुत --